बोट दिख रही है ऊपर खुला आसमान नजर आ रही है।

आगे अ शॉप दिख रही है।

अ वैन लेकर जाते हुए दिख रही है कुछ बाइक साइकिल दिख रही हैं ऊपर आसमान दिख रही है।

वह नीला आसमान दिख रही हैं एक बच्चा झूला-झूल रहीं हैं।

जगह पर कुछ दो एक आदमी एक औरत दिख रही है।

जो कि कार्नर कार्नर फ्रूट शॉप लिखा हुआ है।